यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहां पर दो औरतें खड़ी हुई है एक छोटा सा मंदिर है जिसमें दो मूर्तियां रखी है।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

यहां पे बहुत सारे नमकीन बिस्किट काजू के डिब्बे रखें दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे छोटे बाउल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे सैलून दिखाई दे रहा है जो रंग बिरंगी है।

पूल के पास में एक बॉटल और बैग रखा दिखाई दे रहा है यहां से फुहारा भी उड़ता दिखाई दे रहा है।

आगे फ्रिज भी रखी हुई है और वाशिंग मशीन में रखी दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एक गढ्ढा है एक आदमी गढ्ढे के अंदर है और दो ऊपर खड़े हुए हैं।

यहां पे रोड और लाइटे बहुत सारी लगी हुई है यहां पंखे भी चल रहे है।

यहां पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं जो आपस में बाते कर रहे हैं जिसने नीले रंग की शल्ट पहन रखी है।

पास में बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है जो लाल रंग से पोती हुई है।

यहां पे बहुत सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं जो रंगबिरंगी हैं।

इस्कूटी पे दो आदमी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक ट्राली खड़ी है जो पीले और लाल रंग की दिखाई दे रही है। यहां पे एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत बड़ा झरना दिखाई दे रहा है जिससे पानी नीचे आ रहा है।

उन पत्थरों पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं और कुछ फोटो खींच रहे हैं और--

यहां पे ये चक्र सी बनी हुई हैं यहां पे बहुत सारी रखी हुई हैं।

यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में फोटो शूट है ये आदमी फोन से फोटो शूट कर रहा है।